इस फोटो में दिखाया गया है की यहाँ पे बहोत सारे लोग हैं और एक लड़का पूरा सूट वूट पहन के मंडप पर बैठे हुए है यहाँ पे पूजा हो रहा है और इसीलिए यहाँ पे बहोत सारे लोग आए हुए हैं।

यह एक रोड का फोटो दिखाया गया है यह रोड बहुत ही जादा चोड़ा है।

यह एक मार्केट का फोटो दिखाया गया है इस मार्केट में बहोत ही ज्यादा भीड़ है और यह मार्केट बहोत ही बड़ा मार्केट है यहाँ पे बहोत सारे लोग जाते हैं सामान खरदीने के लिए मार्केट में हर प्रकार के सामान भी मिलते हैं।

यह एक सैलून है इस सैलून में बहुत सारे लोग बाल कटवाने के लिए जाते हैं।

यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका से बाल कटा जाता है इस सैलून में तरह-तरह के डिज़ाइन से बाल को कटा जाता है और यहाँ पर ढाढ़ी और फेशियल भी बनाया जा --

चर्च का फोटो दिखाया गया है।

यह पंडाल बहोत ही अच्छा है इस पंडाल में बहोत सारे लोग जाते हैं इस पंडाल को बहोत ही मेहनत से बनाए हुए हैं और यह पंडाल में बहोत सारे लाइट भी लगाए गए हैं।

और इस फैक्ट्री में बहोत बड़ी-बड़ी मशीन भी हैं।